हरे हरे पेड़ हैं बीच में बहुत सारा खाली ग्राउंड नजर आ रहा है उसमें कुछ उबर खाबर मिट्टी सी भी पड़ी हुई है लाल रंग का भी कुछ दिखाई दे रहा है।

पीछे तलवार की तरह भी कुछ नजर आ रहा है नीचे की तरफ बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं रंग बिरंगे कपड़ों में--

एक व्यक्ति खड़ा है सामने की तरफ इसके काले रंग के बाल हैं और काले रंग की दाढ़ी और मूछ भी है।

ड्रेसिंग पर भी कुछ सामान रखा हुआ है और ड्रेसिंग में लाइट भी लगी हुई है एक एल_सी_डी टी_वी भी लगा हुआ है दो पिठू बैग भी हैं।

खड़ा हुआ है उसने ब्लैक कलर का हाफ बनियान और ब्लैक कलर का पजामा पहना हुआ है।

पेट्रोल पंप है यहाँ पर पेट्रोल भरने की मशीनें लगी हुई हैं दो सफेद रंग की बड़ी गाड़ियां हैं।

यहाँ पर जिम की बहोत सारी मशीनें रखी हुई हैं एक व्यक्ति जिम की मशीन के ऊपर बैठा हुआ है उसने ब्लैक कलर का हाफ बनियान और जींस --

सामने की तरफ हैंगर में बहोत सारे रंग बिरंगे कपड़े लटके हुए हैं एक लंबा पाइप लगा हुआ है।

सफेद रंग के बैलून के गुच्छे भी लगे हुए हैं सिड्डियां है सिडियों के ऊपर नीले रंग का कालीन बिछा हुआ है और कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

लगा हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ कुछ बिछा हुआ भी है।

कलर की पैंट पहनी हुई है पीछे की तरफ कुछ पेड़ और कुछ मिट्टी भी नजर आ रहा है।

यहाँ सामने की तरफ दुकानें हैं उनके अंदर कट्टे रखे हुए हैं बहोत सारे व्यक्ति भी उनके अंदर--

पडे हुए हैं बाहर की तरफ स्कूटी मोटरसाइकिल है एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसने गुलाबी रंग की हाफ टी शर्ट पहनी है और एक बिजली का खंबा भी--

यहाँ पर बहोत सारे ऑटो खड़े हैं पीले और हरे रंग के एक टीन शेड भी लगा हुआ है पेट्रोल पंप की भी कुछ मशीनें हैं यहां पर--

काउंटर पे भी कुछ सामान रखा है एक सफेद रंग का फ्लावर पोर्ट है इसके अंदर सफेद और पीले रंग के फूल नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर बहोत सारा पानी भरा हुआ है और दो नाव भी है।

कुर्सियों पर आदमी बैठे हैं इन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं एक व्यक्ति खड़ा है।

भरी हुई है और कुछ लोग मोटरसाइकिल पर भी है एक पीछे की तरफ पानी की टंकी लगी हुई है एक हरा पेड़ भी नजर आ रहा है।

रोड पर सामने की तरफ कुछ व्यक्ति चलते हुए नजर आ रही है एक व्यक्ति पैदल चल रहा है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर चल रहा है।